यहाँ पे कम र रेट मिलने से लोग दूर-दूर से खरीदने के लिए आते हैं।

यहाँ पे दिखाया गया है यह पहाड़ के नीचे में घर बनाया गया है।

यह घर के अगल-बगल में बहुत ही हरे-भरे भी है और यह घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है।